इस तस्वीर में एक कार वर्कशॉप का दृश्य है जहां एक गाड़ी लिफ्ट पर उठी हुई है और उसका बोनट खुला है।

बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं शायद कोई धार्मिक या सामुदायिक कार्यक्रम हो रहा है।

चारों तरफ हरा भरा मैदान और पत्थर दिखाई दे रहा है।

पीछे के हिस्से में कुछ पौधे गमलों में लगे हुए हैं।

बीच में एक स्टोन पिलर है जिसके ऊपर एक चक्ररा बना हुआ है।

इस तस्वीर में एक फूल की दुकान दिख रही है जहां रंग बिरंगे फूल के ढ़ेर लगे हुए हैं।

पास में एक छत वाला स्ट्रक्चर भी है जो शायद वेटिंग एरिया या शेड हो सकता है।

आसपास हरियाली और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

वर्कशॉप का एनवायरमेंट है जिसमें टूल्स बॉक्सेज और पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं यह कस्टमाइजेशन या मेंटेनेंस का।

छोटी टेबल पर टी_वी और बोतल दिख रहे हैं।

सबके पास बैग पैक है और वो एक लाइन में पेड़ो के बीच से गुजर रहे हैं।

एक आदमी के पास खड़ा है जहां इमाम या उस्ताद बैठे हैं।

ब्रैंड का नाम जे_के टायर है जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ दिख रहा है।

शोरूम अंदर से साफ और ऑर्गेनाइज्ड है।

इस फोटो में कुछ लड़के बेंच पर बैठे हैं और कागज का काम कर रहे हैं।

इस फोटो में हमें दो रंगीन रिक्शा खड़ी दिखाई दे रही है।